कमरे में खिड़कियां नहीं है लेकिन छत में रोशनी के लिए रिसर्च लाइट्स लगी है।

मैकेनिक के पास ठीक कराने के लिए ला रखा है।

बनाने वाले ने प्रदर्शित किया है बीच में हरी चटनी--

में कोई ओकेजन चल रहा है।

दृश्य प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही उत्कर्ष उदाहरण है।

यह दृश्य पोर्टिस हॉस्पिटल का प्रस्तुत होता है।

यह दृश्य तेरा चोवारा रेस्टोरेंट का प्रस्तुत होता है।